एक नंबर बस इसमें बस पुरानी है।

और जो कि बहोत बढ़िया लग रहा है हमको।

आ बहुत बढ़िया लग रहा है हमको।

कोई दिक्कत नहीं है और ये बोट हमको बहुत बढ़ियां लग रहा है।

कोई दिक्कत नहीं लग रहा है इस मार्ट में और हम को ये बहुत बढ़ियां लग रहा है।

और ये पूल हमको बहुत बहियाँ लग रहा है।

और ये स्कूल बहुत बड़ा है। मदन मोहन मालवीया इंटर कॉलेज --

और ये मतलब काटती है सब मछली मारती है सब।

और बहुत बढ़ियां मतलब फोटो घिचवाएं हैं।

और ये जोकि एक पार्क है।

इनका फिटनेस बहुत बढ़िया है और ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं।

और ये एक केक हैं।

और ये केक हमको बहुत बढ़िया लग रहा है।

और कोई बात नहीं है। एक नंबर लग रहा है केक --